इसमें एक बस भी देखा जा सकता है जो बेलगावी टू धनबाद जाती है।

बच्चों के साथ साथ उनकी माताएं भी उपस्थित है।

यहां एक लड़का सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है।

यह केनरा बैंक का शाखा है।

मंदिर के सामने कुछ झंडे भी लगे हैं।

जिसका नाम डेंगर एंटरप्राइजेज है।

पीछे बहोत सारे बादल भी देखे जा सकते हैं।

त्र के अंत में छोटे छोटे घर भी देखे जा सकते हैं।